और यहां पे जिम के सारे सेटअप है।

यहां पे एक बेकरी है उस बेकरी का नाम भाटिया बेकरी है।

इधर उधर घर भी हैं और एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पे एक हिरन और एक बकरी या भेड़िया खड़ी हुई है।

यहां पे घास भी लगी हुए हैं यहां पे फूल भी लगे हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

और एक आदमी व्हाइट कलर का कपड़ा लिए खड़ा है।

जहां पे किसी की शादी है।

यहां पे पानी का बहाव बहुत तेज है।

यह एक स्टेशनरी प्वाइंट है।

और उसने रेड कलर की शल्ट पहनी इधर उधर पेड़ भी है बहोत सारे तरह तरह के पेड़ हैं।

यहां पीछे एक बहोत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है।

और यहां पे कुछ व्यक्ति लोहा तोल रहे है।

और यहां पे चॉकलेट्स भी मिलते हैं।

और यहां पे लाइटे भी लगी है पंखा भी लगा है।

यहां पे तरह तरह के पेड़ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पे सामान भी बुकिंग होता है।

और ये बहोत सुंदर लग रहा है।

और यहां पे बहुत से व्यक्ति आते हैं पेट्रोल लेने।

जंगल है यहां पे कुछ हिरण हैं।

और एजा टेबल भी रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ बैट रखे हुए हैं।

और यहां पे दरवाजा भी लगा है।

और खोए वाली लड्डू और छेने रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाई यहां पे एक तराजू रखा हुआ है।

होंडा साइन में का बाईकें मिलती हैं और हुंडई के कंपनी में कार --

और यहां पे एक लोएस्ट प्राइस में मिलते हैं।

और यहां मरीज आते है उनका इलाज होता है।

यहां पे ए_सी भी लगी है यहां पे बोर्ड भी लगा है।

बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

और यहां पे बहोत सारे पत्थर हैं।

और यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पंखे लगे हैं लाइट लगी है।